गाड़ी वाइट और ऑरेंज कलर का है।

गड्ढे में बहोत सारा पानी इक्कठा है सड़क के बीच में--

यहां लाइट और पंखे सी_सी कैमरा चारों तरफ--

यहां एक बड़ा सा घर भी है और कुछ आदमी बैग भी लिए हुए--

कुछ लड़के खड़े है और एक आदमी साइकिल लेकर जाते--

मैं देख पा रही हूं यहां एक इलेक्ट्रिक शॉप है जहां पर--

पे है महजिद वाइत कलर के पेंट से पेंट किया गया है उसके बगल में एक बड़ा सा होटल भी है।

वे बहुत सारे लाइट्स जल रहे हैं।